पराठा मुँह मे देख कर के पानी आ जाए इसे हम देसी भाषा मे पराठा कहते है पराठा तीन कोण का है यह भरा हुआ पराठा है।

समुद्र में नाविक नाव चला रहा है शायद ये मछवारे है जो मछलियां पकड़ने के लिए नाव का प्रयोग करते है।

नमकीन जिनको अच्छे क्रम में रखा गया है और इनके रेट भी इनके सामने चिपका दिए गए है।

यहां क्राफ्ट का काम चल रहा है। यहां पर एक आदमी अपने सर पर नीले रंग का गमछा बांधे हुए है। कुछ लोग --

यह एक चर्च हैचर्च को जाने वाली रास्ता बहुत सुंदर है साइड में पेड़ लगे हुए है। यह इशू म् --

कुर्सियों को कतारों में रखा गया है जिनपर सफ़ेद कलर का कपड़ा बाँधा गया है।